का झाड़ है आसमान है आसमान साफ है और यहां पे फूलों का बाग दिखाई दे--

स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल में लेडीज भी जेंट्स भी हैं और यहां पे स्लाइड है जो--

यहां पे टूरिज्म है एक मूर्ति है दो मु के मूर्तियां हैं यहां पे एक लेडिस आ रही है बुरखा पहेन के उसका हस्बैंड हर जगह मूर्ति है गलती है यहां पे एक लेडिस बैठी हुई है।

पिक्चर है। यहां पे बॉयज की पिक्चर है। गेट बंद है। गेट काला कलर का है और झाड़ है। गेट के बाजू में है टू व्हीलर --

उनका कॉस्ट्यूम है येलो रेड एंड नीला यहां पे देखने आए हुए हैं उन्हें बहोत सारे इधर भी लेडिज बैठी हुई है।

लोग ठहरे बैठे हुए एक बैठा एक ठहरा हुआ है जो काम कर रहा है एक और एक ठहर के देख रहा है इसके बाद यहां पे चिड़िया है यहां पे अंडर इंट्री मारना है जो कुर्सी पे कोई नहीं बैठा और यहां पे दो नंबर है जहां पे एंट्री मार सक--

यहां पे कुदरती नजारा है पहाड़ है--

यहां पे एक बड़ा ऑफिस है और फूलों से डेकोरेशन करा हुआ है येलो फूला--

और रेड फूला लगाए हुए है और यहां पे ऑफिस के काम के वर्कर बैठे हुए है जो सीट पे फोर व्हीलर गाड़ी है जो बीच में काम कर रही थी शोरूम में --

लेके बेच रहा है और एक वहां पे।

एक दरवाजा खुला है यहां पे एक अंदर है जो अंदर से जा रहा है बड़ी खिड़की है कांच वाले--

यहाँ पे देख रहा हूँ किचन प्लॅनेट हैं।

यहां पे औरते भी है और जेंट्स भी है।

और दिवाल पे व्हाइट कलर है और जो डेकोरेशन करे हैं हैं।

यह है एक स्टोर दुकान यहां पे मैगी मिल रही है बिस्किट मिल रहा है फरसंस और जो भी मिठाई है चॉकलेट है कैडबरी है और यहां पे --

टेबल हैं ऐंड कुर्सी हैं उनपे बैठ सकते हैं सनसेट हैं धूप हैं और हरियाली हैं साइड में जो खूबसूरत लग रहें हैं झाड़ हैं उसके पीछे हैं--